यह एक पूरी जगह है। यहाँ पर सारे पहाड़ है। बहुत सारे पेड़-पौधे पेड़ लगाए गए हैं।

यह एक पहाड़ का फ़ोटो दिखाया जा रहा है। यह पहाड़ देखने में बहुत ही सुन्दर और अच्छा लग रहा है।